यहाँ पे एक मोर बैठा हुआ है जो काफी बड़ा है यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई है।

यहाँ एक फुलो का गार्डन है यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं जिनमें तरह-तरह के फूल लगे हैं।

यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है जिसमें बहुत से कपड़े हैं यहाँ पे एक आदमी स्कूटी से जा रहा है यहाँ पे एक ऑटो भी है यहाँ पे एक कार खड़ी है यहाँ पे पुतले हैं जिसपे कपड़े हैं।

यहाॅं पे टिशू पेपर हुए पड़े हुए हैं। यहाॅं पर मेज कांच की है। पास में एक आदमी खड़ा है। यहाॅं पर एक बोतल भी रखी हुई है।

यह क्लासरूम है यहां पर बहुत से बच्चे बैठे हैं।

यहाँ पे एक आदमी का जूता दिख रहा है यहाँ पे बहोत से ईंटें पत्थर है यहाँ पे एक बड़ी भी ईंटे हैं यहाँं पे काई लगी हुई है ईंटों पे।